एयरोप्लेन एक बड़े से ग्राउंड में दिखाई दे रहा है।

एयरोप्लेन पर लाल कलर के पट्टे लगे दिखाई दे रहे है।

एयरोप्लेन के पंख की छाया धुप में दिखाई दे रही है।